जिन्होंने फौजी वाली ड्रेस पहनी है।

एक काउंटर रखा है। कुछ लोग खड़े हैं।

कुछ आस पास में हरे भरे पेड़ हैं।

और उसके पास कुछ मकान भी बने हैं।

यहां पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं।

और नीचे खाली मैदान में कुछ हरी हरी घास खड़ी है।

ये एक अस्कूल है जिसमें कुछ मेज पड़ी है।

और पंखे भी लगे हैं और ऊपर छत में लाइट लगी है।

और नीचे कुछ हरी हरी घास खड़ी है और कुछ पेड़ भी लगे हैं।

ये एक ऑफिस है जिसमें एक नीले कलर का काउंटर बना है।

और कुछ स्लैब बनी हुई है बैठने के लिए।

और इसके आसपास कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हैं।